और बहोत सुंदर लग रहे हैं देखने में--

यहां पे तीन आदमी पकड़ के एक--

एक सीढ़ी नजर आ रहा है बहोत बड़े और दरवाजा--

यह बहुत सुंदर ये रेस्टोरेंट है जो कि यहां का लाइट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में।

अपने बच्चे को बैठाए हुए हेलमेट भी पेहने हुए हैं और साइकिल से आदमी जा रहे हैं।

अंदर डेकोरेट किए गए हैं गेट को लाइट से चमचमाते हुए जोकी बोहोत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में।

यह एक कार है इस कार को धो रहा है।